यहाँ के साइड साइड में बहुत सारे पेड़ पोधे हैं और ये प्लेटफार्म का नाम भी लिखा हुआ है जोकि अच्छा से दिखने लगा है मंडी का प्लेटफार्म जिसका नाम है ।.

यहाँ पे गाड़ी पार्किंग किया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बाइक स्कूटी और बोलेरो कार पार्क किया गया है और उसके आगे में एक ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर से बिजली उत बिजली कंट्रोल हो के सप्लाई किया जाता है।

बहुत सारे भक्त श्रद्धालु भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं और इस का गेट जो है बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया है बहुत ही फूल लगाए गए हैं और यहाँ लाखो श्रद्धालु भक्त आते हैं दर्शन के लिए।

और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं जैसे आम का है।